इस तस्वीर में बहुत ही सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

वह गोले रंग बिरंगे रंग के हैं एक लाल रंग का है दूसरा पीले तीसरा हरे रंग --

इसीलिए यहां पर गाड़ियां भी बहुत सारी दिख रही है कुछ गाड़ी सफेद रंग की तो कुछ काले रंग की है।

वह सामान किचन का समान होता है।